उसके पास लाल कलर का बैग है।

लिखा हुआ भी है और बहुत बड़े-बड़े पत्थर रखे हुए हैं।

और नीचे उस पर कुछ लिखा हुआ भी है।

तार नीचे की साइड बिछे हुए हैं ऐसा लग रहा है की यहाँ पर छत डल रहा है।

ये है एक बड़ा-सा स्कूल जैसा दिखाई दे रहा है जिस पर कुछ लिखा हुआ भी है।

यहाँ पर एक लम्बा सा रोड जैसा दिखाई दे रहा है और साइड में बहुत --

डालियाँ भी दिखाई दे रही है और पीछे की तरफ केले भी दिखाई दे रहें हैं।

और जालियाँ भी दिखाई दे रही है।

और यहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें भी लगी हुई है पीछे की साइड रेड रेड दीवार जैसी दिखाई दे रही है।

और जिन्स जैसा पहेन रखा है और यहाँ पर पर्दे जे वगेरा भी दिखाई दे रहे हैं।

और यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए भी है और यहाँ पर अलग-अलग डिजाइन के कपडे टंगे हुए है।

और यहाँ पर पीछे की साइड एक चेयर रखी हुई है और यहाँ पर एक बहुत सारे खभे जैसे भी दिखाई दे रहे है।

जिसमें रेड और ऑरेंज और ब्लू और बहुत सारे अलग-अलग --